खम्भों से हमें चार पांच तार भी दिखाई दे रहे है आसमान दिख रहा है जो कि व्हाइट कलर का है।

जोकि व्हाइट कलर की है एक आगे कार खड़ी हुई है वो ब्लैक कलर की है ।

पेंट किया गया है। हमें पेड़ भी दिखाई दे रहे है घर के पीछे और हमें एक घर और दिख रहा है जो कि वाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

जोकि ब्लेजर पहने हुए है हाथ में घड़ी पहने हुए है शूज पहने हुए है।

रखी हुई है तीन चार इनपर दौडते है एक ट्यूब लाइट भी लगी हुई दिख रही है।

इस इमेज मे हमे पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है एक झरना दिख रहा है ।

इस इमेज में हमें सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा है मिथिला --

इस इमेज में हमें खेत दिखाई दे रहें हैं तीन चार खेत हैं।

ये फोटो एक जिम की है जिसमे जिम की चार पांच मशीने दिखाई दे रही है।

एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जोकि व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए है ।

इस इमेज में हमें सामने एक ऑफिस बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है पोस्ट --

एक आदमी चाय पीता हुआ दिख रहा है। एक आदमी और खड़ा है। एक लड़का खड़ा है जो येलो कलर की टी-शर्ट पेहने हुए है।

नीचे एक बाल्टी रखी हुई है रेड कलर की साइड में हमें बैलून लगी हुई दिखाई दे रही --

इस इमेज मे हमे बहुत सारा पानी दिख तालाब में भरा हुआ दिखाई दे रहा है ।

फोटो लगी हुई दिख रही है और हमे चार पांच आदमी खड़े होकर कुछ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर हमे पंखे लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं ।

इस इमेज में हमें सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा है होटल ।

इस इमेज में हमें चार लेडीजे दिखाई दे रही है जो की बैठ करके --

दे रहे हैं व्हाइट कलर की टेबल दिख रही है सामने एक हमे कार दिख रही है रेड कलर की--

तीन झंडे लगे हुए दिख रहे है एक ब्लू कलर का झंडा है दो रेड कलर के झंडे है और हमें यहाँ खम्भे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज मे हमे स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल मे हमे दो लड़के--

इस इमेज मे हमे एक घर दिखाई दे रहा है चार पांच --